घर के बगल में बैरियर लगा हुआ है।

तीन टो लडका है एक लडका सादा पहना है एक ची चैक शर्ट पहना है लडकी काला पहना है।

एक लड़का चश्मा पहना हुआ है एक लड़का घड़ी वाला है एक लड़का मास्क लगाया हुआ है एक लड़का टोपी पहना हुआ है।